यह एक बाजार है। यहाँ पे कोई मार्किट लगा हुआ है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई है और यहाँ पे एक फुल की दूकानें दिख रही है फल की दूकान है। इस फुल की दूकान में बहुत सारी ताजे-ताजे फूल हैं।